हॉस्पिटल में जो यहाँ पे लिख हुआ है फीमेल जेनरल वार्ड ।

एक शायद बी वन बी टू या बी थ्री के जैसे कुछ मॉल है जहाँ पे जो है प्राइस लिखा हुआ है।

ये बत्तख है जो बैठी हुई है गिट्टी के ऊपर और इधर साइड में और सारे बत्तख हैं। ऊपर में दो तीन चार दीदी है।

ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है। --